काले रंग की पेंट पेहन रखी है तथा पीछे आदमी ने कुछ आदमियों ने केप लगा रखी है।

पाँच तथा बीच मे एक छेद भी दिख रहा तथा सामने की तरफ कुछ पानी पड़ा हुआ दिख रहा है।

और वह लेन्टर डालते हुये दिख रहे हैं।

यह फोटो एक रेलवे स्टेशन का दिख रहा है। उसमे से एक पटरी खाली दिख रही है।

तथा सामने की तरफ की कुछ खरबूज भी रखे हुए दिख रहे हैं।

उस बेग का रंग लाल एवं काला दिख रहा है।

स्त्रियाँ दिख रही हैं तथा मिट्टी से बनाई हुई एक पेड़ भी दिखा रहा है।

तथा उसकी छत पर कुछ पंखे लगे हुए दिख रहे हैं जिनका रंग सफ़ेद है तथा पीछे की तरफ़ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे --